हर पौधे के किनारे किनारे क्यारी भी बनी हुई है।

रास्ते के बीच में बिजली के खंभे लगे हुए है।

स्विमिंग पूल में जाने के लिए रेलिंग भी बनी हुई है।

दरवाजा बंद है दरवाजे के बाहर एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यह तस्वीर किसी सब्जी दुकान की लग रही है जिसमें बंधा टमाटर शिमला मिर्च और बहुत सारी चीजे मिल रही है।

पटरियों पे बहुत सारी घास भी लगी हुई है।

एक तिरंगा भी लगा हुआ है और पास में एक पानी की टंकी भी लगी हुई है।

बहुत सारे वाहन है जैसे चार पहिया वाहन ऑटो है और बहुत सारे लोग भी हैं।

पेट्रोल पंप के पीछे बड़ी सी बिल्डिंग भी है।

बीच वाले मंदिर में एक व्यक्ति पूजा कर रहा है।

पंख लगे हुए हैं गुब्बारे लगे हुए हैं और एक चेयर भी पड़ी हुई है।

और उसके पास में ही एक बोटल का कट आउट रखा हुआ है।